दोस्तों advance topics in a function पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
कुछ उदाहरणों की मदद से source command
background में फंक्शन रखना
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system और
gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
source command का उपयोग shell script में एक फ़ाइल load करने के लिए किया जाता है
यह उस file से commands को reads और निष्पादित करता है
यह script में code को भी imports करता है
यह उपयोगी है जब multiple scripts एक common data या एक function library का उपयोग करता है
source command के लिए रचनाक्रम निम्न है
source filename
source path _ to _ file
souce filename arguments
मैं function dot sh file खोलती हूँ
यह shebang line है
source detail dot sh function dot sh में detail dot sh फाइल load करेगा
मैं detail dot sh file खोलती हूँ
मेरे पास function machine है
अब function के अंदर type करें
echo function machine is called in function dot sh file
save पर click करें
अब function dot sh file पर वापस जाएँ
यहाँ type करें echo beginning of program
save पर click करें
फिर type करें machine echo end of program
यह message beginning of program print करेगा
machine function कॉल है
और यह message end of program print करेगा
ध्यान दें machine function है जिसे हमने detail dot sh file में बनाया है
और हम यहाँ function को function dot sh file में कॉल कर रहे हैं
save पर click करें
program को निष्पादित करें
terminal पर type करें chmod space plus + x space function dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash function dot sh
enter दबाएँ
output प्रदर्शित होता है
अब background function पर जाते हैं
background में process रन करने के लिए हम function कॉल के अंत में & ampersand उपयोग करते हैं
shell command को रन करने के लिए child process को विभाजित करता है
विभाजन प्रक्रिया में job number और pid process identifier होगा
इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं मैं background dot sh फाइल खोलूँगी
यह एक shebang line है
bg underscore function function की शुरूआत चिन्हित करता है
echo statement यहाँ inside bg _ function message प्रदर्शित करता है
आगे हम सभी dot mp3 files को ढूँढने के लिए find command का उपयोग करेंगे
यह statement extension dot mp3 के साथ सभी files को ढूँढेगा
यह वर्तमान working directory में ऐसा करेगा
hyphen iname का उपयोग case को अनदेखा करने के लिए किया जाता है
और परिणाम myplaylist txt में संचित होता है
अब type करें bg underscore function ampersand & यह function कॉल है & ampersand bg _ function को background में रखता है
अब save पर click करें
program को निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
type करें chmod space plus x space background dot sh
enter दबाएँ
अब टाइप करें dot slash background dot sh
enter दबाएँ
रिक्त output दर्शाता है कि dot mp3 file वर्तमान directory में मौजूद नहीं है
अब अपने program पर वापस आएँ
type करें echo hyphene process runing in background are slash n और jobs space hyphen l
save पर click करें
यह echo statement process runing in background are message प्रदर्शित करेगा
jobs space hyphen l सभी background jobs के status की सूची बनाता है
अब अपने terminal पर वापस आएँ
अब type करें dot slash background sh
enter दबाएँ
output दिखाया गया है
यहाँ opening और closing square bracket में 1 job number है
3962 pid है
pid तदनुसार अलगअलग होंगे
यदि function निष्पादित होने में समय लेता है तो यह background में रन होगा
और हम running status देखेंगे
यदि function script से पहले निष्पादित होता है तो हम done status देखेंगे
output machineदरmachine के लिए अलगअलग होंगे
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
कुछ उदाहरणों की मदद से
source कमांड
background में फंक्शन को रखना
नियत कार्य के रूप में दो संख्याओं को जोडने के लिए एक function add लिखें और function को अन्य file में कॉल करें
नीचे दिखाये गये link पर उपलब्ध video देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद